और साइड में लोहे की ग्रिल भी है।

हाऊस में बहुत सारे कांच की खिड़की भी है।

और इसमें बहुत सारी खिड़कियां भी है।

अब यहां पर दो डरमी भी हैं और कुछ कपड़े भी टंगे हुए हैं।

और इस पार कांच की कुछ खिड़कियां भी लगी हुई है।

यह एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है।

यह एक बहुत सुंदर कमरा है।

और उसके पास में कुछ तकिए भी धरे हुए हैं।

अउर एक डंडा है जिस पर लाइट लगी हुई है।

आऊर साइड में लोहे का जिन्ना भी है।

और जमीन पर लाल कलर और काले कलर की मैट बिछी हुई है।

और इसमें कुछ कांच की खिड़कियां भी हैं।